बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे। पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं औ नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

तालाब दिखाई दे रहा है और एक ब्रिज भी दिखाई दे रहा है।

यहॉँ बिल्डिंग दिखाई दे रहे है और उसकी दीवार का कलर व्हाइट और पिंक है। यहॉँ पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। यहॉँ पर कुछ दिखाई दे रहे हैं|

आची फोटो दिखाई दे रही है और यह पे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रही है।